ये मुझे शॉप है और इसपे शॉप पे बहोत सारे चीज रखे गए है जैसे यहाँ पे शैम्पू वगैरा रखे गए है सामान है ।

और यहाँ पे शूज़ का शायद है कुछ और इसके पीछे भी यहाँ पे इको टॉक ऐसे कुछ लिखा है आई एम नाउ यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा है। ऊपर में बहोत सारे हैं जिसके और एक में कूलर लगा हुवा है जो दिखने में बहोत अच्छा है। इसके बाद इसके साइड में बदल बँक का ए.टी.एम. लगा हुआ है।

इन्होने इनका दाढ़ी का स्टाइल बहोत अच्छा है दिखने में बहोत अच्छा लग रहा है सुंदर है ।